कुछ केले रखे हुए हैं। बगल में कुछ सेव और न पीछे संतरा वगैरह कुछ एक मॉल में रखे हुए हैं। एक डलिया रखी हुई है और उधर एक फूड ल फूड लिखा हुआ है। एक बोर्ड लगा हुआ है हरे कलर का है।

कुछ बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जो कि पोस्टर ऑरेंज कलर के हैं एक स्कूटी वाला वहां से निकल रहा है |

चौरानबे और पाँच सौ-सोलह लिखा हुआ है सामने कुछ पैकेट्स रखे हुए है और कुछ कट्टीया राखी हुई है नीचे कुछ पिन रखे हुए है। --

चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपर कुछ नसैनी सी लगी हुई है। इधर की तरफ़ चॉकलेटी कलर का कुछ फर्श भी लाल कलर का ही है और लाल कलर का च --